एक नांव दिख रही है नांव में फिरोजी कलर हुआ है।

एक पॉलिथीन दिख रही है पीली कलर की।

हरे कलर का पेड़ है।

गुम्मे के तरह फर्श दिख रही है।

यहां एक स्लैब दिख रही है।

नीला रॉड दिख रहा है।

लाल कलर के स्कूटी लाल कलर की कार एक साइकल दिख रही है।

खूब सारे युवक खड़े हैं।

बड़ा सा टेंट लगा है।

सफेद कलर की दीवार दिख रही है।

सारे हिरन दिख रहे हैं।

कत्थई कलर की छत है।

बहुत सारे युवक वुमन दिख रहे हैं।

काले कलर का बोर्ड दिख रहा है।

एक लाल कलर की बस दिख रही है।

सफेद कलर का बैग दिख रहा है।

नीला चादरें दिख रही हैं।

सफेद कलर की दीवार है।

खूब सारे वूमेन दिख रहे हैं।

कलर का पेड़ दिख रहा है।

नीला ऑरेंज झूला लगा है।

हरा कलर का पेड़ दिख रहा है।

कुछ लोग लिफ्ट से चढ़ उतर रहे हैं।

खूब सारे हरे कलर के पेड़ दिख रहे हैं।

सफेद पीली पट्टियां दिख रही हैं।

लाल पीले काले गुब्बारे दिख रहे हैं।

तीन खंभे दिख रहे हैं।

बहुत सारे रंग बिरंगे पोस्टर लगे हैं।

दो गाड़ियां दिख रही है।

लाल कलर का बैग है।

हरे कलर की बोतल रखी है।

हरा कलर का पेड़ दिख रहा है।